यहाँ पर नी ब्लू कलर का शेड डाला हुआ है यहाँ पर दो आदमी भी खड़े हुए हैं।

यहां एक आदमी पाइप से पानी भर रहा है।

एक आदमी नीले कलर की शर्ट पहने हैं।

यहाँ एक पानी की जग भी रखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां मालगाड़ी के नीचे गिट्ठी डली हुई है।

यहां एक छोटा सा तालाव भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं ।

यहां कुछ आइसक्रीम की दुकान भी दिख रही है यहां कुछ चेयरें ब्लैक कलर की भी लगी है और कुछ लाल कलर की दिखाई दे रही हैं।

बेबी जॉनसनस भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक आदमी माक्स लगा के बैठा है और एक आदमी लाल कलर का माक्स लगा के बैठा है।

यह एक रोड दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारी बुके रखी हुई है। यहां पर एक--

यहां पर कुछ आदमी गाड़ी पे बैठे दिखाई दे रहे हैं।

आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

कांच की खिड़कियां लगी हुई है।

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके हाथों में दो लकड़ियां भी हैं।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है।

जहां लाइटें लगी हुई हैं।

यहाँ बहुत सारे जीने दिखाई दे रहे हैं।

दुकान दिखाई दे रही है जो पीले--

दिखाई दे रहा है। यहां बहोत सारे कपड़े लगे हुए हैं यहां बहोत सारी पेटें लगी--

पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ बाईकें भी खड़ी हुई हैं।

यहाँ कुछ दुकानें दिखाई दे रही--